फूलो की माला दिखाई दे रही है एक व्यक्ति दिख रहा है।

वह किसी पुस्तक की दुकान का दिख रहा है अंदर अलमारी मे पुस्तके रखी दिखाई दे रही हैं ।

इस चित्र मे एक बड़ा माल दिखाई दे रहा है।

आस पास नीले पर्दे डले दिख रहे है हरा फर्स दिख--